और सफेद रंग की लड़ियां भी दिखाई दे रही है।

और दो आदमी और एक लेडिस अपने बच्चों का केक कटवाने के लिए रेडी हो रही हैं।